इस जगह मे दिखाई दे रहा है | कुछ बच्चे एक साथ नाच रहे हैं और एक बच्चे का गार्जियन है और पीछे है एक बिल्डिंग --

साइड में दो दिखाई दे रहा है पीछे कांँच दिखाई दे रहा है ।

इस जिम सेंटर का रुम दिखा भी रहा है जिम सेंटर में बहुत कुछ मिसिंग लग रहा है।

बाहर से बिजली आ रहा है अंदर में और कुछ यल्लो कलर की मशीन और कुछ ब्लैक कलर की मशीन नजर में आ रहा है।

बहुत कलर की वाइट ग्रीन ब्लू येलो डार्क --

सारे कस्टमर हैं और ईटे दिखाई दे रही है जो की इसने लिखा था ।

और एक बंदे का बैठत है। एक बंदे का रेड कलर कि फुल शर्ट है।